ये भी कोई पुराना बागला या मकान के फोटो बुजयित है। बहुत बड़ा पहले के जमाने में ऐसे रहेला छे घूमे लायक चीज--

वही पहले के जमाने का चीज है एक हरा-सा पेड़ बुझाइत हेय ओहु पत्ता बड़ा हरा हेय देखे मे एकदम अच्छा लगएत हेय बहुत बढ़िया लगएत हेय देखे मे खूबसूरत हेय।

यह भी देखूँ लगा है।

फल का बिक्री हो रहा है लोग खरीदते हैं यहाँ से ले जाके अपने घर में यूज करते हैं छोटा-मोटा बाजार है देहाती बाजार लगा हुआ है देखने में भी अच्छा लगता है बिजली के तार लगे हैं उससे बिजली सप्लाय है टाउन में---

ई खजूर पे फल भी लगता है भाई जी फलवा भी तोड़ के खा सकलै है लोग हरा-भरा पेड़ बहुत अच्छा जगह है।

प्लेट में क्या खूबसूरत भोजन लगाबल है इभी प्लेट में खूबसूरत भोजन लगावल है।

इ हमारे भाई लोग इ मोटर के माध्यम से कुछ बनाया जाता होगा कोई कपंनी का इ फोटो है।